ये एक स्टेड स्टेडियम है। यहाँ सब लोग खेलने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस स्टेडियम में खेलने में। बहुत सारा लाइट्स लगा है जिसके कारण हम लोग रात को भी खेल सकते हैं।

ई जे एक घुमने का जगह है जो यहाँ बहुत लोग घुमने के लिए आते है बहुत अच्छा लगता है ऐसा जगह में घुमने में बहुत लोग पिकनिक मनाने के लिए आते है इधर |.

ये एक मछली बाजार है जो की यहाँ हम लोग मछली खरीदने के लिए जाते हैं और बहुत अच्छा-अच्छा मछली यहाँ मिलता है जैसे की कतला रेहु गोल्डन और बहुत सारे मछली बहुत लोग यहीं लेने के लिये आते हैं।